और इस पहाड़ में हमें एक गुफा दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है।

यह एक मेडिकल का चित्र है इसमें दो पंखा है ये पंखा अभी बंद है इस मेडिकल का नाम दवा इंडिया है।

जिसमें एक ए_सी लगी हुई है और उसके बाजू में एक बोर्ड पर ओम लिखा हुआ है।

और नीचे साइड हमे कुछ चित्र दिखाई दे रहे है।

यह चित्र एक रूम का है जिसमें हमें एक ए_सी देखने को मिल रहा है।

गुफा के ऊपरी विभाग में बहोत सारे हरे प्रकार के घास पेड़ पौधे उगे हैं और गुफा के बाजू में एक और छोटी सी गुफा है।

यह चित्र एक बैंक का है और उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर सेंट्रल बैंक आफ इंडिया गुजराती में लिखा हुआ है।

यह चित्र एक आयुर्वेदिक दुकान का दिखाई दे रहा है।

नीचे चार खिड़कियां लगी हुई हैं और बीच में एक दरवाजा लगा हुआ है।

चित्र में हमें तीन बड़े बड़े खंबे दिखाई दे रहे हैं।

और इस चित्र में बड़े बड़े पेड़ झाड़ भी हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक मंदे मंदिर का है और इस चित्र में हमें शिव जी की शिवलिंग भी देखने को मिल रही है।

और इस चित्र में हमें एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

और इस चित्र में बहोत सारे जिम के ट्रेनिंग के मशीन दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे नौपूरी नौ टाईसे सफेद कलर की दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में हम एक सफेद कलर की कार देखने को मिल रही है।

और इस चित्र में हमें दो कुर्सियां देखने को मिल रही हैं जिनका कलर लाल है।

और इस दुकान में एक ए_सी भी लगा हुआ है।

और इस चित्र मैं हमे एक बस भी देखने को मिल रही हैं।

यह चित्र एक फोन के दुकान का है और इस दुकान का नाम एम_एस मोबाइल है।

और इस हॉल के बाहर बहोत सारी स्कूटीयां खड़ी हुईं हैं।

इस होटल में सजावटी लाइटे भी लगी है जोकि चालू है अभी --

यह चित्र एक पहाड़ का है जिस पर दो बंदर बैठे हुए हैं और एक बंदर खड़ा हो रहा है।

चित्र में हमें बोहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है जिसमें रिक्शा और कार भी हैं दो तीन।

और इस चित्र में हमें दो तीन खंबे दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक जिम का है और इस जिम में जिम करते हुए लोगों के पोस्टर भी लगे हुए हैं।

इस छवि में हमें बच्चे का खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।

और इस चित्र में बाहर बोहोत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।